एक लड़के ने ग्लास के अंदर हाथ बाला हुआ है और एक पानी वाली बोतल पड़ी हुई है नीचे टब पड़ा हुआ है पानी वाला है कारपेट है कारपेट का रंग --

और साथ में इधर-उधर ये है ग्रास हर खेल की छोटी-छोटी ग्रास है और सामने साइकल खड़ा --

कुर्सियों का रंग सुर्ख है और मेज का रंग भी सुर्ख है और मेज का रंग जो बिल्कुल है उसका रंग भी सब्ज है।

इस तस्वीर में सामने पडदे खड़े हुए है पडदो का रंग --

और साथ ही में एक छोटी सी टेबल पड़ी हुई है टेबल के ऊपर एक केटल पड़ी हुई है केटल के साथ दो।

कुछ डबे बंद पड़े हुए हैं और कुछ ऐसे ही टाइप उसमें खड़ा किए हुए हैं ।

पीछे दरख्त हैं बड़े-बड़े दरख्त हैं और इनके पीछे मतलब आदमी खड़ा हुआ है उसने सुरख रंग की शर्ट पहनी हुई है।

अअ ब्लैक काले रंग का और सुरह रंग का डक्का लगा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में कुछ छोटे-छोटे पौधे पड़े हुए हैं उसके ऊपर जो खूबसूरत से पौधे उगाए गए हैं।

जो नजर आ रहा है वो सारी मटी मटी नजर आ रही है और साथ में एक दीवार के साथ ही कुछ ईंट पड़ी हुई है एक गोल सा कोलनुमा --

की शर्टें पहनी हुई है और जब के कुर्सियों का रंग कुछ का रंग ब्राउन है और कुछ का रंग सफ़ेद।

और जबकि पर्पल और सफेद रंग की उसने साड़ी पहनी हुई है काले रंग का ब्लाउज पहना हुआ है बैठे हुए हैं।

गोल तरंग के कुछ डब्बे पड़े हुए हैं कुछ कपड़े पड़े हुए हैं पैकिंग में।

की दीवार है दीवार के सा नीचे फर्श के ऊपर कुछ पड़ी हुई हैं।